और अंदर से लाइटिंग लगी हुई हैं कॉफ़ी हाउस में।

टेबील भी डली हुई हैं और यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं कॉफ़ी हाउस में।

और यह कांच से बना हुआ है और यहां पौधे भी लगे हुए हैं| साइड --

जैसे की आप इस फोटो में देख पा रहे हैं।

क्लास में पंखे लाइट लगे हुए हैं।

मंदिर के सामने से बैनर लगा हुवा है भंडारे का।

चिकित्सालय में एक रूम में दो डॉक्टर जो पशुवों का इलाज कर रहे हैं।

और दोकानदार भी है जो फ़ूलों को बेच रहा है।

यहाँ बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग में बाहर की ओर सीढ़ियाँ दिख रही है।

यहाँ फटाके मिल रहे है जोकि बोक्सो में और रैक में रक्खे हुए है।

ये फॅमिली हेल्थ केयर क्लिनिक है।

जहाँ बोट में दो लोग बैठे हुवे है।

यह मोगा होटल दिख रही है।

यह पीव्हीआर सिनेमा घर है।

जहाँ मूवीज देखने लोग आया करते हैं।

यह कांच में पैक लड़कों की शेरवानी टंगी हुई है।

यहाँ बहुत से प्रकार के लडकों के कपडे मिल रहे हैं स्वेटर मिल रही है जीन्स मिल रही है।